और यहां डेस्क बेंच है बेंच में गद्दा लगाए गए हैं और यहां खिड़की है ग्रिल लगाए हुए हैं और मनी प्लांट का लोटा सब है और यहां बड़ा सा खूटा दिखाया--

साइड साइड में लाल रंग का लगाए गए हैं और यहां चार आदमी दिखाई दे रहे--

यहां बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं।

बैनर में तीन झांपि है और साइड में पॉट सब है पॉट में फ्लावर सब है।

और ऊपर सीढ़ी है सीढ़ी को पकड़ के चलने वाला भी है ऊपर एक दुकान है।

हम यहां पे देख रहे हैं बड़ा सा सिटी नगर है।

गिरजाघर के सामने एक लाइट भी है।

एक स्कूटी बोगा है काला है लाल है और दूसरी ग्रे कलर का है और तीसरा लाल और मैरून कलर का है।

नीचे एक दरवाजा है वो कोना में लंबा सा पाइप है और ये एक यू के जैसा दरवाजा खुला है।

अंदर तीन दरवाजा दिखाई दे रहे एक खिड़की दिखाई दे रहे हैं।

और इस पार उस पार पर्दा दिखाई दे रहे है नीचे पांच फादर दिखाई दे रहे हैं टोपी पहने हैं।

उसमें चारों ओर पोस्टर लगाए गए हैं कविता पान भंडारी यह स्टेनारी सामग्री और यहां दो बाइक दिखाई दे रहे एक साइकिल दिखाई दे रहे है दो आदमी दिखाई दे रहे हैं बांस--

और घास दिखाई दे रहे हैं और आधा पुलिस के जैसा कपड़ा पहने खड़ा है और लड़की सब भी खड़े हैं।

जो बंबू का बेड़ा है मिट्टी से लिपा है यहां दो लाइट जल रही है तीन खूंटा--

और ये किया गया है उसका ऊपर फेंसिंग तार लगाए गए हैं।

यहां देख सकते हैं बडा सा रेस्टोरेंट है।

गोल की पोस्ट के पास एक बकेट पड़ा हुआ है।

और यह आंगन ब्लॉक इटा से लगाए गए हैं।

और यहां तीन सीढ़ी के ऊपर तिरंगा झंडा लगाए गए हैं उसके आगे टाइल्स लगाए गये उसमें लिखा है और तीन फ्लोर का बिल्डिंग है उसका बीच में छोटा सा भी टाइल्स लगाए गए हैं दो दरवाजा दिखाई दे एक बंद है खुला है।

और दरवाजा है कांट का बंद है दरवाजा।

और यहां वॉल पे तीन बड़ा बड़ा पिक्चर है।